ये चित्र मा जी हम देख सकदु की हम त यका मा सफ़ेद रंगाक्या और संतरा रंग की फूल की माला टांगी दिखेण लगीं।